ऑपरेशन ऑपरेशन होता हैं कुछ है यहां पर कैमरा है।

बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं यहां पर बैठने के लिए भी जगह है।

यहां पर एक चेयर है बाहर की तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई है।

टेलर का दुकान है यहां पर एक खंभा है बगल में--

बहुत खुश रहते हैं बच्चे इससे बहुत अच्छा लगता है इसे बनाने में बहुत अच्छा लगता है इसे बच्चे बनाते है।

उसके बाद अअयहां पर खाने पीने की व्यवस्था हो रही है।

और यहां पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं कुछ व्यवस्था कर रहे हैं एक बच्चावो टहल रहा है।

लड़की है ये कस्टमर है यहां पर यहां पर कुछ बैनर्स लगे हुए हैं बाहर की तरफ एक--

पता खुशरी रोड झरझर मोबाइल नंबर इतना यहां पर पथरी का ऑपरेशन किया जाता है यहां पर--

यहां पर आदमी नहीं दिख रहे हैं यहां पर लाइटे ऊपर के ऊपर है।

लेडीजों का सामान मिलता है यहां पर पंधरा परसेंट पंधरा रुपये लिखा गया है ।

और नए जमाने की मॉडर्न मॉडर्न जमाने की है साइकिल ये स--

यह एच डी एफ सी बैंक है यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं यहां पर--

और यहां ये शायद बैंक बंद होने वाला है यहां पर एक दादाजी बैठे हैं लाठी लेकर--

और यहां पर ऊपर की तरफ एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ है।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

और यहां पर ऊपर की तरफ दो-तीन दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ ये--

ये यहां पर सूरज डूबने वाला है एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो आ रही है यहां पर --

बहुत अच्छा नजारा दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।